ये कोई दुकान है जहां पे सभी वर्कर्स काम कर रहे हैं।

एक व्यक्ति उस पे बैठे हैं जिसके टी-शर्ट का कलर ब्लू एंड --

येलो रेड ग्रीन एण्ड --

क्या ही अच्छा नजारा है बहुत सारे वृक्ष है बहुत सारे--

एक ऊपर बहुत अच्छे वृक्ष के पत्ते आ रहे हैं जो बहुत अच्छे हैं।

और ये इसके साइड से बहुत सारे वृक्ष हैं जो काफी ज्यादा छाव दे रहे हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं।

ऊपर एक बोर्ड भी है जो अच्छे डिजाइन से बना हुआ है।

बहुत जो पीले कलर से बाउंड है।

बहुत सारे अच्छे-अच्छे पिलर है और ग्रिल --